बगल में एक छोटी सी छत वाली झोपड़ी जैसी इमारत है जो शायद किसी स्थानीय कार्य के लिए उपयोग होती होगी।

यह तस्वीर एक एयरपोर्ट की है जहां एक व्यक्ति इंडिगो एयरलाइन के विमान के सामने खरा है।

सामने एक पत्थरों से बना एक रास्ता है जो एक खुले क्षेत्र की ओर जा रहा है।

यह एक कपड़ों की दुकान की तस्वीर है इस दुकान में तरह तरह के कपड़े रखे गए हैं जैसे जैकेट स्वेटर शर्ट और अन्य गर्म कपड़े।

टेबल पर कई तरह के दवाइयां और सिरप रखे हुए है।

मुख्य द्वार के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डिपार्मेंट आफ हिंदी एच_पी_यू शिमला इससे साफ है कि यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की इमारत है।